जिसमे बहुत सारी कुर्सि भी दिखाई दे रहें हैएवं एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और बाहर के फर्स ईंट की बनी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़े एवं पौधे दिखाई दे रहे हैं और आसमान साफ और नीला दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक जिम की अंदरिय हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है।

सामने एक पिलर भी दिखाई दे रही है और जिम का फर्श टाइल्स का बना हुआ है जो बहुत साफ एवं स्वच्छ दिखाई दे रही है।

दीवारों का रंग सफेद दिखाई दे रहा है एवं सीलिंग का भी रंग सफेद है।

तस्वीर में एक बड़े से कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा--

लाल रंग का कालीन बिछाया हुआ दिखायी दे रहा है।

कुछ मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहे हैं एवं स्कूटी भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक सड़क की दृश्य दिखाई दे रही है जिसके किनारे एक सुइंग बोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक गोदाम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है यहां एक टावर है।

आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने काउंटर दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

जिसका स्विंग बोर्ड पे लकी ट्रंक एंड फा फर्नीचर हाउस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कहीं विभिन्न प्रकारों के फ्रिजे एवं गोदरेज और कूलर फैन भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है एवं कुछ बाल्टिये भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यह तस्वीर मे राधे एवं कृष्ण की मूर्ति की दृश्य दिखाई दे रही है जिनके ऊपर विभिन्न विभिन्न रंगों एवं प्रकारों के फूलों से सजाये गए हैं।

सफेद एवं नील गुब्बारों से सजाया गया है और अंदर बहुत सारे रैके बनी हुई है जिसपे विभिन्न विभिन्न प्रकारों के सामाने रखे गए हैं।

कुछ टैबले भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और दुकान का प्रवेश द्वार कांच का बना हुआ है।

उपर एक सफेद रंग का बल्ब होल्डर भी लगा हुआ है।

कुछ इमारते भी दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ बिजली के खंभे तारे एवं भी दिखाई दे रहे हैं।

दो पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहे हैं एवं दीवारों का रंग सफेद है और कुछ पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक कमरे की अंदर ये हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक रैक बना हुआ दिखाई दे रहा है और उसपे कुछ खेल का सामान दिखाई दे रहा है।

पीले रंग की इमारतें भी दिखाई दे रही है जिसमें कई खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं एवं आसमान का रंग नीला है और वह साफ है और स्वच्छ दिखाई दे रहा है।